रेड कलर की एक चटाई बिछी हुई है इसमें बहोत सारी खिड़कियां लगी हुई --

रोड है जिसमे बस चल रही है बहुत सारे लोग खड़े हुए है जिसमे जिसमे पुलिस वाला भी दिखाई दे रहा है। जिसमे जीपों के पीछे ऊपर आदमी खड़े हुए है।

यह एक यह एक ब एक ब ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी ईटे है एक अं गाड़ी दिखाई दे रही है कुछ लोग उस गाड़ी को ईटो पे चला रहे है।

एक एक आदमी जो उसको उन पेड़ों को पानी देते दिखाई दे रहा है एक रास्ता भी दिखाई --

यह यह एक रूम है जिसमे एक कॉफी स्टॉल दिखाई दे रहा है तीन-चार लोग खड़े हुए कुछ लोग पी भी रहे है चाय एक लोग खड़े हुए है जो दुकान का मालिक दिखाई दे रहा है।

यह एक मॉल हैं जिसमें लोग जा रहे हैं और चींजो को खरीदते दिखाई दे रहे हैं इसमें अलग-अलग तरह के डिब्बे-डिब्बी दिखाई दे रहे हैं इस इस मॉल में --

यहाँ एक रोड दिखाई दे रहा है जिसमें एक आदमी झाड़ू लगा दिखाई दे रहा है अलग-अलग तरह के वाहन चल रहे हैं लोग दिखाई दे रहे हैं लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं एक मकान बना भी --